मरुन कलर की छत हुई है इस घर की।

और यहां पे एक वाइट कलर की ठेपुल है और रेड कलर की चेयर है।

ग्रीन ब्लैक गोल्डन और पिंक कलर की बॉटल्स है।

ये एक शॉप है और ये ये दवाई की दुकान है।

और यहां पे शॉप का पेंट व्हाइट कलर किया गया है एक बोर्ड सामने है।

और ऊपर एक फैन लगा हुआ है।

और सामने एक शॉप है और उस शॉप के सामने कुछ बॉक्सेस है और बहोत सारे सामान है।

एक ऑफिस है और यहां पे एक टेबल है और सामने चेयर्स है।

और एक आदमी चेयर पर बैठा हुआ है उसने--

सूट पहना हुआ है उसके बालों का कलर ब्लैक है।

और पीछे एक लड़की खड़ी है उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

अह ब्लू कलर की जैकेट पेहने हाथ में घड़ी देख रहा है उसने सर पे टोपी लगाइए का--

और यहाँ पे एक आदमी है उसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की--

लैपटॉप के लिए डेस्क पे बच्चे हैं और यहां पे--

और एक ब्लैक कलर की बैग है और एक लड़की है।

ये यहां पे क्रिसमस मना रहे हैं और यहां पे--

और यहां पे बलूंस हैं रेड और ग्रीन और वाइट कलर के बेल बलूंस है।

ये यहां पे कपड़े है किए हुए हैं और यहां पर कुछ बॉक्स है और यहां पे एक और बॉक्स है और यहां पे ऊपर ए_सी लगा हुआ है।

ये गाड़ी है और गाड़ी में एक आदमी है।

और वो बैठा हुआ है कुछ कर रहा है।

ये यहां पे रूम है और यहां पे कर्टन्स लगाए हुए हैं।

एक ने ब्लैक कपड़े पेहने हुए हैं इन सब के बालों का कलर --